जिसके एंट्रेंस में दो लोग बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं।

व्यूवर्स आप यहां देख सकते हैं ये एक बालकनी लग रहा है।

आप यहां देख सकते हैं ये एक सब्जी का दुकान है।

आप यहां देख सकते हैं ये आईना का बगल में एक डोर भी दिख पा रहा है।

ये सारे बुक ये रैक में ऑर्गनाइज से रखा हुआ है।

जैसे कि आप ये फोटो में देख सकते है।

उसके किनारे में एक पेट्रोल पंप है।

पेड़ पौधा भी है और उसका आकाश का कलर जो ब्लू है उसका रिफ्लेक्शन में पानी का कलर भी ब्लू है।

ये बिल्डिंग का आगे में एक तावर पोस भी दिख रहा है और कुछ साइकिल बाइक पार्क करके रखा हुआ है।

ये पिक्चर में मुझे दो घर दिख रहा है और घर के आगे कंपाउंड है जिसमें एक जिप्सी पार्क करके रखा हुआ है।

ये घर का पीछे में कुछ बंबू भी मुझे दिख रहा है।

यह घर का नीचे एक बंबू से बनाया हुआ गमला भी मुझे दिख रहा है।

यहां वॉल के कलर सफेद है।

पिक्चर मे मुझे एक अंकल भी दिख रहा है वो दुकानदार लग रहा है।

और सड़क के किनार बहुत सारे ऑटो रिक्शा पार्क किया हुआ है।

पीछे में देख सकते एक विंडो है और साइड में भी एक दो विंडो है।

आप यहां देख सकते हैं या साथ लड़के फोटो खींचने के लिए पोस दे रहे हैं।

देख सकते हैं कि वो आगे में एक मिरर लगा के रखा हुआ है जिसमें एक इंसान का रिफ्लेक्शन है।